ब्लैक और नीला-सी लड़की दिखाई दे रही है बहुत ही चमकती हुई दिखाई दे रही है लाइट भी लगी हुई है।

हम देखने को मिल रहा है ये पहाड़ जो बहुत ही अच्छा रस्ता और ये --

घाँस खाने वाले भी बहुत ज्यादे मोटे पतले यहाँ पेड-पौधे लगे हुए हैं जो कि हरियाली देखने को मिल रहा हैं नीचे दुबलि सजा लग रहा-- और ये बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिल रही हैं बहुत ही अच्छा लग रहा हैं देखने में--

यहाँ पे कोई उम कॉफी स्टाल हैं। एं जो की यहाँ पर चाय ओए बनती है उम और शायद पानी भी हमें दिखाई दे रहा है और ले रेड कलर के कपड़ा भी दिखई दी और बिस्किट भी --

एक गुफा है गुफा के जस्ट लड़का के अ पीछे गुफा है जो की बहुत बड़े अ पत्थर लगे हुए हैं और साइड में भी पत्थल है जो की बहुत बड़ी पत्थल अ साइड इधर उधर भी पत्थल लगेगी बहत ऊँची ये पत्थल है जो की बहुत ही अद्भुत तरह से दखने को लग रहा और ब्लेक है।